यहाँ पे एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है जिसमे बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

ये एक रिक्शा है जो रोड पर खड़ा हुआ है और इसका रंग काला और लाल रंग का है यह इस लाइट भी लगी हुई है इसीलिए

तीन लड़कियाँ सब अच्छे से तैयार हुई है और भरतनाट्यम कर रही है पीछे शिव जी का फोटो लगा हुआ है यह लड़कियाँ सब कुछ आ ग्रीनमेट के ऊपर डांस कर रही है चेनी पहनी हुई है।

एक नदी है जिसमे तीन आ चार लोग बैठ कर नदी मै बड़वे मै बैठ कर नदी का सवर्ण लेने जा रहे है पानी बेहता हुआ नजर आ रहा है बोहोत बड़ी-बड़ी झाड़ी नजर आ रही है।

दिखाए जा रहे हैं एक आदमी खड़े होकर फोन बात कर रहा है ऊपर बिल्डिंग भी नजर आ रही है रोड भी दिख --

इता ईठी दिखाई देती है बालू दिखाई देता है यहाँ पे पानी पकड़ के रखे है आसमान नजर आता है झाड़ी बहुत सारी नजर आती है।